और अब कई लोगो की मुंडिया दिखाई दे रही है।

और एक कुर्सी भी है जिसका रंग लाल कलर का है।

ये तस्वीर किसी चौराहे की है जिस चौराहे में नन्दी भगवान को विराजा गया है।

अ अपना दाढ़ी बनवा रहा है पूरा दुकान लाल कलर के पेंट में पुता हुआ है उसमे फुग्गे भी लगे हुए है।

जैसे की यहाँ पे देखा जा सकता है एक व्यक्ति गार्डनिंग कर रहा है।